यहाँ कई लोग है जो कि --

पेड़-पौधे बहोत सारे दिख रहे हैं। बहोत ही अच्छा यहाँ आगे बैठक टाइप का बना है।

बहुत बड़ा जाल है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है।